एक महिला और दो लड़कियां मैट पर एक्सरसाइज कर रही हैं।

जोकि बना हुआ है इसके अंदर लैटर रखा जाता है।

इस तस्वीर मे आप बहोत सारे बोर्ड देख सकते हैं।